पीछे एक खली ग्राउंड दिख रहा है जो की बहोत ही बढ़िया गार्डन लग रहा है जो की बहुत ही प्यारा गार्डन लग रहा है गार्डन में हमें अंदर बहुत साडी ब्रांच दिख रही है जो की बैठने के लिए बनाई गई है जोगी बहुत ही सुंदर ब्रांच लग रही है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

जैसा की हम देख सकते हैं सामने हमको बहुत सुन्दर नज़ारा दिखरा है हम देख सकते हैं सामने हमको बहुत ही प्यारा पोस्ट ऑफिस दिख रहा है पोस्ट फिस हमको लाल कलर का दिखरा है

ऊपर हमको बोर्ड दिख रहा है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है और पीछे हमको अ पेड़ दिख रहे हैं जो हरे-भरे दिख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं बहुत ही सुन्दर बहुत ह--

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। हमको पानी दिख रहा है जो कि नदी दिख रही है। जो कि बहुत ही बढ़िया नदी दिख रही है।